अंडे पीछे दो लोगो भी बैठी से और यहां पे कुर्सी भी रखी से पंखा भी लगा से ऊपर--

यहाँ पे बहुत सारे छोरा छोरन भी खड़े से और बहुत बड़े मंदिर का फोटो दिखाई थे इन लास में चाहिए--

इस फोटो एक मुझे छोरा दिखाई देने लगा जो पीछे खड़ा से उसने अपने हाथ में एक घड़ी भी पहन रखी है और जींस की पेंट पहन के खड़ा से फोटो खिंचवा रहा से।

फोटो में मैं देख रहा हूं बहुत घने पड़ी है किसी कमरे का फोटो लाग रहा था जहां पे चार पांच खाट पड़ी सोने के रजाई बिस्तर भी पड़े से--

बहुत से आदमी छोरा देखन भीड़ लगीन से ऊपर पहले रंग का कपड़ा भी आसमान ना लगाया हुआ से और यहाँ पे--

आड़े यापे आ फुल्ल भी दिखाई दे रहे है और भगवान माला भी दिखाई दे रही सै बहुत बड़े किसी घर का फोटो दिखाई देन लागरा सै --

भगवान की पूजा की जारी से और यहाँ पे छोटा बाल छोरा भी खड़ा से और उसकी मम्मी ने साड़ी--

और दुकान के भीतर सोना ज्वेलरी गुंठी आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ से सोने की दुकान दिखाई देन लाग रही से बराबर में मुझे भी यहाँ पे कोई एक और दुकान दिखाई दे रही से--

अरे रोड पर चलते कि गाड़ी का फोटो दिखाई दे रहा थे जहाँ पर रोड पर कोई गाड़ी में आदमी बैठ के यहाँ जा रहे थे--

किसी पेट्रोल पंप का फोटो दिखाई दे रहा हैजहापे मोटरसाइकिल बाइका में गड्डी में --

किसी मैं देख रहा किसी रेस्टोरेंट का फोटो दिखाई देने लग रहा मुझे जहाँ पर बहुत सारे छोरा छोरी बैठ के खाना खा रहे थे--

कोई म्यूजिक बड़ी बजा रखी है बीना बजाई अपने हाथ में एक आदमी बैठकर यहाँ पर ढोलक बजा रहा से हाथ में लगता है संगीत हो रखा है जागरण हो रहा है बढ़िया गाना फोटो है।

बड़ा बढ़िया फोटो देखने लग रहा बहुत सोना साफ सुतरा से दिक्कत वाली बात नहीं से काले रंग की भीरण से सिग--

किसी बड़े कॉलेज का फोटो से ये पीछे बड़ा बहुत बड़ा पेड़ भी खड़े थे।

बच्चे भी बहुत सारे बच्चे आदमी भी दिखाई देखन लाग रे से बड़े को गेट का सफेद रंग का गेट दिखाई दे रहा--

गुब्बारे भी लटक लगलछे सफेद रंग के भी लाल रंग के भी गुब्बारे लगलचे --